प्र पंडाल का दृश्य है जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है जिसमे अलग-अलग रंग के पर्दों की पट्टीया दिखाई दे रही है जो की हरे गुलाबी नीले सफ़ेद रंग की है।